इस दृश्य में एक पक्षी नजर आ रहा है जो छोटे छोटे पौधों के ऊपर चल रहा है।

दाईं ओर एक और व्यक्ति खड़ा है जो शायद किसी सामान को सेल्फ में व्यवस्थित कर रहा है।

इसका वातावरण शांत और शांतिपूर्ण लगता है।

तस्वीर में एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है ।

भवन और उसके आसपास चमकीली रोशनी सजाई गई है।

नीले और सफेद गुब्बारो का उपयोग सजावट के लिए किया गया है।

दीवारों पर कुछ सूचनाये या पोस्टर लगे हुए हैं।

चारों ओर खुला परिसर दिखाई दे रहा है तस्वीर में दिन का समय दिखाई देता है।

घर की छत पर कई सफेद रंग की लाइट लगी हुई है जो कमरे को रोशन कर रही है।

यह एक गोदाम का चित्र है छत को पीले रंग की लोहे के गाडरौ से सहारा दिया गया है ।

आंवा के लिए इस्तेमाल किया जा रहे हैं कुछ श्रमिक काम कर रहे हैं।

सामने एक व्यक्ति खड़ा है और उसको दोनों तरफ बड़े बड़े तीन स्पीकर लगे हुए हैं स्पीकर के ऊपर दोनों तरफ लेजर लाइट लगा हुआ है।

मंडप का निर्माण सफेद खंभों और धातु की छत से किया गया है।

इस तस्वीर में दुकान दिख रही है जिसका नाम सीड्स स्टोर है।

सड़क के किनारे छोटा सा रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के बाहर कुछ दो पहिए गाड़ी लगे हुए हैं।

घरों पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कुमार लिखा हुआ है।

यह एक पार्क में बच्चों के खेलने का दृश्य है।

पीछे की तरफ कई बड़े बड़े पेड़ हैं और छोटे मोटे घास उगे हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट या भोजन का कक्ष का दृश्य है।

तस्वीर में अमीर फूड स्टोर नाम की दुकान दिखाई दे रही है दुकान पर सुधा दूध दही पनीर पेड़ा घी आदि डेरी उत्पादन मिलते हैं।